उसके अगल बाग टी.वी. दिखाई दे रहा और सीढ़ी भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

और यहाँ पर बहुत बड़ा --

और यहाँ पे लाइट्स भी जल रही है।